सवेरे से जिम में काफी लोग बॉडी बनाने आते हैं जिम के समान हैं नेट बिछाया हुआ है यहाँ पे एक आदमी खड़ा है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां काफी लोग घूम रहे हैं टहल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं खाना खा रहे हैं नीचे बैठ के |